साइड में एक स्टेप वाइज़ लाइटे है।

जो गेट अ अभी फिलाल बंद है यह लकडी का गेट हैं।

लगी भीड़ से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर कोई --

वाटिका बनाई हुई है जहाँ पर ये --

इसके कई सालो से पेंट नही हुआ जिसके कारण --

और आदमी बैठे हूए नजर आ रहे हैं।

एक आदमी अपने सकूटी को स्कूटी को --

यह लोहे का वो बना हुआ गेट है।

यहाँ पर वर्क शॉप के लीये --

यह पुल यहाँ एक रोड के --

दोरा यूज किया जायेगा यहाँ पर।

यह एक टाइप की पार्किंग --

यहाँ पर शीशा का गेट लगाया हुआ है।

पारक हरा-भरा है। पारक के अंदर एज --

ज्योत जलती हुई नजर आ रही है। ये सभी --

एक बैंच दो बेंच ढले हुए हैं।

एक महिलाएं और दो तीन बुजर्ग --

जाली लगी हुई है जहाँ पर ये मोर को --

हेवेअन्स मेन्स सेलुन की दुकान है जहाँ पर --